स्विच बोर्ड दिखाइ दे रहा है लाइट्स दिखाई दे रही है खिड़की दिखाई दे रही हैं ट्रेड में मशीन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की उसे पे ऑरेंज कलर भी है।

यहाँ पे एक स्तूप दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर शेर बैठा हुआ है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है ईंट के मकान दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटी घास दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे र --

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं व्हाइट कलर की जिसपे ब्लू कलर की खोडिंग बनी हुई हैं उस पर व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पे एक दीवार दिखाई दे रही है जिसपे बहुत सारी कलाकृतियाँ दिखाई दे रही है राजा महाराजा नर्तकियों की कलाकृति दिखाई दे रही है।

एक बैलर बैनर दिखाइ दे रहा है ब्लू कलर का जिस पे वाइट कलर से हैल्थी होम लिखा हुआ हैं जिस पर डॉक्टर महेन्द्र कुमार डॉक्टर जी.के. गुप्ता और डॉक्टर --

ये डमरू दिखाई दे रहा हे धनुष और बाण दिखाई दे रहे हें।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की इसमें बहोत सारी बाल्कनियाँ दिखाई दे रही है।